यह एक अस्टेडियम है और यह अस्टेडियम में --

यह एक किला है जो कि देखने में अत्यंत सुंदर लग रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह किला पत्थर के द्वारा काट काट के पत्थर को--

यह एक डैम है और यह डैम बहुत ही बड़ी एरिया में बनाई गई है। यह डैम नदी पर बनी गई है और इस डैम में बहुत ही ज्यादा पानी है और यहाँ पर --